तस्वीर मा जी हम देख सगदों कि यखमा हमि छकी सारा डोखरान दिखेण लाग्यां तखि फंडा हमि छकी सारा डाला बुर्थन दिख्येण लग्यां और आर पार फुंड हमि गों दिख्येण लग्युं।

ओर गों का एंच फुन हमि भरी सारु जंगल दिख्येण लग्युं और डोखरु मा जी हमि फसल दिखेणी हरयां-हरयां।

ईं तस्वीर मा जी हम देख सगदों कि यखा मा हमि एक ग्राउंड दिख्येण लग्युं ग्राउंड का सामनि हमि एक बड़ु सा द्वारन दिख्येण लग्युं।